इस तस्वीर में एक बड़ा सा लोहे का बिजली का खम्बा हैं जिसमे काफी सारी लाइट लगी हुई हैं पीछे एक बिल्डिंग नज़र आ रही हैं।

तस्वीर एक सब्जी मार्केट की है जिसमे एक दुकान पर काफी सारे समान सब्जियां रखी हुई है बोरियों मे सब्जी रखी हुई है।